तो बस में चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और एक आदमी सामने से आते हुए नज़र आ रहा है सामने एक और बस खड़ी है जिसका कलर हरा है और उसके पीछे एक पेड़ लगा है।

और पत्ता गोभी का खेत दिखाई दे रहा है जहाँ पर सामने की तरफ आ कुछ घास भी दिखाई दे रही है।

और सामने की तरफ भी चढ़ाव बनी हुई है और इधर सीधे हाथ की तरफ भी चढ़ाव बनी हुई है |

और एक काले कलर की कार रखी है और सफ़ेद कलर की कार रखी है।

वार्ज लिखा हुआ है और एक आँख बनी हुई है।

कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा सा ढोल बजा रहे हैं | कुछ लड़की भी --

दिखाई दे रही है ये और ऊपर की तरफ एक निशाने दिखाई दे रही है जो काली कलर की है | काली कलर की निशानी रखी हुई है |

एक दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर ली एक बोर्ड लगा हुआ है बाहर की तरफ वहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स ब्यूटी ब्लूम और कुछ --

रेनबो और बादल दिखाई दे रहे हैं और सामने की तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई है।